बढ़िया दिख रहा है और जिसमें बुद्ध जी हंस रहे हैं एण्ड बुद्ध या सेठ जी या जो कुछ हंस रहे है और काफी मुझे अच्छे दिख --

ये मेरीज हॉल है। मेरीज हॉल में शादी किया जाता है और सेलिब्रेशन मनाया जाता है।

यह एक जवान युवक है जो शादी घर गए हुए है और शादी में एक कुर्सी के में बैठ कर अपना तस्वीर खिचवा रहे है। और --

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टो टोटो है। टोटो का नाम सेंट्रल बैंक से मेरे से जो लोन लिया है टोटो में लेकिन एक फिर मिलेंगे टोटो काफी अच्छा है। टोटो मोटरसाइकिल जैसा है टोटो में सवारी यात्रीगण अपना यात छोटे-मोटी सफर के लिए टोटो यूज करते --

यह महिला और एक आदमी का फोटो दिखाया गया है। और काफी बढ़िया फोटो है। और छे पुतले और छे एक मोर और एक मछली का फोटो दिखाया गया है जो काफी सुन्दर और काफी बढ़िया दिख रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है।

नदी के साइड डेम बन रहा है ओर डेम बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है और या तो पूल बनाने की प्रक्रिया स स्टार्ट हो रहा हैका क्यू की नदी बहुत बढ़िया दिख रहा है और नदी --